और सेफ का तस्वीर बना हुआ है और एक ड्रैगन की भी इसमें तस्वीर है दरवाजा है और उपर में भी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है।

आ जो है बादल का एक रंग बना हुआ है।

वह बाहर निकल रहा है और एक शानदार जोर मट- मटकी है वो रस्सी से लटक रही है।

यह तस्वीर किसी शादी समारोह की लग रही है।

यहाँ है जो ऊपर से देख रहे है मोबाईल पर बात कर रहे है। नीचे--

यह तस्वीर किसी विद्यालय की लग रही है जहां चारदीवाली --

बहोत सारे खिड़की है और छज्जा निकला है।

यह तस्वीर किसी मैदान की है।

बाहर दो तीन सीमेंट की कुर्सियाँ रखी हुई हैं। मेनू रखा हुआलिखा हुआ है।

प्रयोग शाला का है जिसमे बहुत सारे बच्चे कुछ क्राफ्टिंग का काम कर रहे हैं।